अगल बगल कई सारे पेड़ हैं जिनका रंग हरा है।

ये दृश्य एक जिम का है जिसमें बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स है।

नीचे दो चेयर है और एक टेबल है।

कुछ स्टील कि कुर्सियां हैं और एक प्लास्टिक का भी कुर्सी है।

इस फोटो में चार अलमीरा जैसा बड़ा बड़ा बॉक्स है।

बगल में एक पीले रंग का और काला रंग का बोर्ड है।

बगल में प्लास्टिक से डेकोरेशन किया है बगल में बड़े बड़े घर है।

बीच में एक छोटा सा बड़ा एकदम लंबा रोड है।